और इसमें लोग बैठे हुए हैं।

ये डॉक्टर शेफाली का क्लीनिक है।

तरह तरह के पर्दे दिख रहे हैं।

जिसमें लोग टहल रहे हैं तीन लोग जो।

ये एक मेंस शोरूम है।

एक छोटा बच्चा सो गया है।

जो केसर बाग में है।

यह चौराहा हाजरतगंज पे स्थित।

इसके बगल में शुगर ब्लूम बेकरी का बोर्ड लगा है।

चारों तरफ पेड़ लगें हुए हैं।

एक बुलेट है लाल कलर की स्कूटी खड़ी है।

यह एक मेट्रो स्टेशन प्लेटफारम है।

यह लखनऊ में स्थित रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल है।

सामने एक स्कूटी खड़ी है।